यहाँ पर बच्चे एवं बड़े के लिए भी झूला लगे हें सभी बच्चे-बड़े यहाँ पर झूला झूल रहें --

ग्राउंड है यह ग्राउंड में बोस बहुत ही बम बड़े-बड़े पेड़-पौधे है यह उन ये ग्राउंड के किनारे बहुत बड़ी-बड़ी घर भी है|

कुर्सियां लगी है एवं टेबल लगे है यह हॉल में बहुत सारे नू कमरे है एवं बहुत सारे सीसे लगे है यहाँ पर बहुत से आदमी--

बगुला यहाँ पर डूब-डूब कर नहा रहे है। यह बगुला काफी सुंदर है।

यहाँ पर अपने-अपने काम करने के लिए आते है। यह ऑफिस ए.सी. लगा है एवम पंखा लगा हुआ है। यह ऑफिस में बोहोत सारे आदमी भी --

यह एक ऑफिस है यह हो ऑफिस मे बहुत सारे आदमी यहां पर अपने-अपने कंप्यूटर लेकर --